हरियाली है और पानी का कलर दिख नहीं रहा।

और नारियल का दरख्त है और आसपास पूरा पुल है पुल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

रात की मेरी आसपास बहुत सारी लाइट है आसपास बहुत सारी बिल्डिंग बहुत सारे दरख़्त और नीले कलर का आसमान है।

ये दुकान है दुकान के बाहर तीन लोग खड़े हुए दाधार दिख रहा है और दुकान का गेट जो है--

यहां पर बहुत सारा होंडा खड़ा हुआ है और एक होंडे में लाइट जल रहा है और--

और की कार का कलर ---

यह शाम का मंदिर है यहां पर नदी के पास बिल्कुल--

चॉकलेट है और एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी पर एक टॉप रखा हुआ है।

आसपास के घरों में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

बहुत सारे पौधों का कलर पूरा ग्रीन है और बहुत सारे फूल है अलग-अलग।

लाल कलर क फूल उगा हुआ है और पूरा पौधा हरा भरा है।

एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और आसपास बहुत सारे दरख्त हैं आसपास बहुत सारे घर हैं।

यहां पर बहुत सारी औरते हैं और औरते तब--

यहां पर तीन कार खड़ी हुई है और तीनों कार का कलर --

बिल्कुल एक है अलग-अलग कार खड़ी हुई है कार पर पूरा लाइट लगा हुआ है।

और आस पास बहुत सारी पानी की टंकी है पानी की टंकी कलर व्हाइट और ग्रीन है।

खेलने का ग्राउंड है ग्राउंड में बहोत सारे खिलाड़ी लोग खड़े हुए हैं ब्लू कलर की शर्ट में पहने हुए--